और एक पेड़ भी है। यहाँ पर एक दीवाल है। पूरा मस्त है। वो बना हुआ है। पूरा मस्त है। आप सब भी आ सकते हैं। पूरा मस्त दीवाल है। आप सब भी घूमने आ सकते हैं। हमेशा ये जगह पूरा मस्त है। आप सब भी रोज --

है। यहाँ पर गाड़ी लगाया जाता है। यह पूरा मस्त जगह है। यहाँ पर एक दादा जी भी हैं। यहाँ पर फल का एक दुकान भी है। यहाँ पर फल मिलता है। यह पूरा मस्त जगह है। यहाँ पर पेड़-पोधे भी उगे हुए हैं। ये पूरा मस्त जगह है।

तिल ख़रीदा जाता यहाँ पर एक एक लड़का है जो मछली सबको बेचता है।

यहाँ पर बहुत सारे बाईक है। यहाँ पर बहुत आदमी है पर आप सब भी यहाँ पे एक नारियल गाछी है। यहाँ पर एक पेड़ मोटरसाइकिल भी है। यहाँ पर आदमी सब बहुत हैं। यह आदमी सब गाड़ी पर बैठे हुए हैं। यह --